यह एक हवेली सी है जो की बहुत पुरानी है। यहाँ पे बहुत सारे विंडोज़ है और यहाँ पे जो कलर है बिल्डिंग का एक ही कलर में किया गया है।

रेलवे स्टेशन है | रेलवे स्टेशन के बोहोत सारे स्टैर्स लगे हुए हैं और ब्रिज पे जाने के लिए और यहाँ बोहोत बड़ा ब्रिज है ।

यह बैट है। यहाँ पर बहुत सारे बैट रखे हुए हैं जो कि टोन कंपनी के हैं और एसएस एडिडास वगैरह के है। बहुत सारे बॉल रखे हुए हैं।

यह एक बस स्टॉप है और वहाँ की ये एक केंटीन है जहा पे सभी लोग बस के लिए वेट भी करते हैं और यहाँ पे बेठे भी हैं एक शॉप भी है।

बहुत सारे जने खड़े है यहाँ पे । एक लाइट भी लगी हुई है और यहाँ पे एक बांस भी --